छत पे एक बेबानी खड़ी हुई है नीचे एक आदमी रिक्शा लेकर जा रहा है यहां पे एक रिस्क रिक्शा खड़ा भी है पीछे एक आदमी --

डिफेंड करने की यहां पे एक दरवाजा उस पर एक पर्दा लगा हुआ है अंदर एक खिड़की लगी हुई है।

यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है यहां पे बाइकें खड़ी हुई है।

यहां पे पौधे भी लगे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए है और यहां पे पेड़--

लाइटे भी लगी हुई है और दीवारों पे सफेद कलर का पेंट किया गया है।

तरबूज केले और भी बोहोत सारी चीजे रखी हुई है।

ऊपर बल्ब लगाया हुआ है लाइट के लिए --

ये एक जिम की तस्वीर है यहां पे लड़कियां भी जिम कर रही और लड़के भी जिम कर रहे यहां पे बहुत सारे --